यहाँ पे एक खूबसूरत मोर दिखाई दे रहा है जो कि मोरपंखी कलर और पोप्टी कलर जिसका पिसारा बहुत बड़ा हैं ।

यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे एक दिवान रखा हुआ है वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हुए है वहाँ पे बैंडेज किया गया है उसने सॉक्स पहने हैं।